और बहोत ही पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और --

सुबिधा भी है और सब बहुत ही अच्छी सजावट भी कई गई है और इस मंदिर में बहुत ही --